ये एक सर्विस सेंटर की फोटो जहा पे (पर) एक कार आई हुई है रिपेयर करने पीछे भी एक कार खड़ी है इस फोटो आप मे देख सकते है।

ये किसी मशीन का मशीन है ऑरेंज कलर का पेंट हो रखा है।

ए ब्रेन्च है। बाहर में घर सब है। एक बैंक है लाइट है।

एक जूसर है ब साइड में लगा हुआ। चेयर है।

सामने एक बैठने का कुर्सी है लकड़ी का। पीछे भी कबर्ड ओबर्ड है।